यह एक दुकान है और यहा बहुत सारी मिठाई ओर भी दूसरे कुछ समान --

यहाँ एक जगह है और यहाँ एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का कलर सफ़ेद है और आस पास--

गुब्बारों से सजाया गया है और आस पास कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है।

यह एक जगा है और यहा कुछ बसे और एक रिक्शा दिखाई--

यहाँ एक पुराणी जगहा दिखाई--